हमें यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है बहुत सारा कचरा दिखाई दे रहा है मिट्टी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक नीले कलर का ट्रैक्टर दिख रहा है कुछ व्हाइट कलर का दिख रहा है ब्लैक कलर के टायर दिख रहे है।

रेड कलर की बोर्ड दिखाई दे रहा है वाइट एंड ब्लैक कलर का हमें यहाँ पर बहोत सारे ब लोग दिख रहे हैं टीचर दिखाई दे रही है चॉक दिखाई दे रहा है खिड़ --

हमें यहाँ पर दुकान दिखाई दे रही है बहुत सारा समान दिखाई दे रहा है प्लास्टिक के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पर पेड़-पौधे दिख रहे हैं कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं जो रेड कलर के हैं हमें यहां पर नीला-नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ पर फूल दिखाई दे रहे है जो रेड है व्हाइट है येलो है हरे है हमे यहाँ पे खिड़कीयां दिखाई दे रही है और जो दीवारों का कलर है वो व्हाइट कलर की दिख रही है।

तार दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का है हमे यहां पे दीवालों का जो कलर है व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है खिड़किया दिखाई दे रही है।

हमें यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर एक शटर दिखाई दे रही है जो ब्राउन कलर की है एक केक दिखाई दे रहा है एक बिस्किट्स दिखाई दे रहे हैं।